पेट्रोल पंप है जो के दूर तक है येलो कलर का पट्टा है और दो खंभे नजर आ रहें हैं एक बाइक नजर आ रही है एक और खंभा है।

कुछ देख रहे है सामने की तरफ कुछ रेड कलर का कुछ नजर आ रहा है आसमान भी नजर आ रहा है और लोग खड़े हुए है।